कुछ फ्रिज रखी हुई है और लैंप रखा हुआ है और गोल घूमने वाली चेयर रखी हुई है डस्टबिन रखा हुआ डिब्बे रखे हुए है इलेक्ट्रिसिटी स्विच रखा हुआ है।

आदमी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं लैंप दिखाई दे रहे हैं रोड दिखाई दे रहा हैं और जाले दिखाई दे रही है खिड़कियां दिखाई दे रही हैं।

हां और खिड़की दिखाई दे रही है पैसेवरी लिखा हुआ है बिल्डिंग के ऊपर लकड़ी दिखाई दे रही है और पर्स दिखाई दे रही है।

एक एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है जिसका रेप पर एरोप्लेन खड़ा हुआ है कुछ आदमी दिखाई दे रहे है एरोप्लेन की सीढी दिखाई दे रही हैं।

अंधेरा दिखाई दे रहा है लाइट जली हुई दिखाई दे रही है।

लोगों की जिसमें कुछ औरतें भी है कुछ लोगे भी है कुछ लड़के भी है कुछ गाड़ियां दिखाई दे रही है।

पानी दिखाई दे रहा है पानी के अंदर दो नाव दिखाई दे रही है।

खंभा दिखाई दे रहा है रोड लाइट दिखाई दे रही हैं।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

एक कार खड़ी हुई नजर आ रही है घास नजर आ रही है एक इलेक्टस्टिक बोर्ड नजर आ रहा है।

हॉल के अंदर एक लोहे की कुर्सियां नजर आ रही है चेयर नजर आ रही है।

हमें पीले कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है।